ये एक बड़ी प्लेटफार्म दिख रही है। यहाँ पे वैशाली एक्सप्रेस जो बहोत ही सुपर-फ़ास्ट ट्रेन है।

और इसके ठीक देखा जाए टैग बर्नवाल क्लॉथ सेंटर साड़ी ओड़ी की दुकाने हैं। ये हनुमान मंदिर पे है।

और रोड से रोड के ठीक किनारे एक लड़का जा रहा है और पेड़ भी है और अच्छी जगह है काफी स्पेस है। अच्छा लग --

ये एक बाइक की शोरूम लग रही हे औ यहाँ पे सेल चल रहा हेन्। छोटी छोटी जो विकी है उसपे नगद स् छूट चल रही है। काफी अच्छी जगह लग रही है।

और काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और काफी भीड़ है और अच्छी जगह लग रही है और सही है अच्छा है।

गेट के ठीक सामने से गुजर रहे हैं लोग। कुछ लोग चेयर पे बैठे हुए हैं और ऊपर देखा जाए तो ये मर्करी होती है बहोत ही अच्छी जगह है। सही लग रहा है। साफ़ सुथरा सही।

यह मैरिज हॉल पूरी तरह से सजी हुई है और देखा जाये तो यहाँ पे काफी सारी भीड़ हैं। इतने सारे पौधे लगे हुए हैं लाइट के।

और ये ट्रेन खड़ी है वहां पे। इसके ठीक बगल में ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और मॉक ये भाईसाहब माक्स लगाके खड़े है। तीन लोग बैठे हुए हैं और काफी हमे लग रहा है हरा भरा है कचड़ा है सही है। फिर --

ये भाईसाहब पुल पे खड़े हैं और हाफ पेंट पहने हुए हैं। जूते भी पहने हुए हैं और सर में रुमाल रख म पहने रक्खे हैं।